libreoffice base पर इस spoken tutorial में आपका स्वागत है
मॉडिफाइंग a form के इस tutorial में हम सीखेंगे कि कैसे एक form में data प्रविष्ट करें form में बदलाव करें
पिछले tutorial में हमने libreoffice base का इस्तेमाल करते हुए form बनाना सीखा था
हमने अपने उदाहरण library database में एक सरल books data entry form बनाया था
चलिए देखते हैं कि कैसे हम इस form का इस्तेमाल करते हुए books सूची में data प्रविष्ट करते हैं
चलिए सबसे पहले libreoffice base program शुरू करते हैं यदि वह पहले से नहीं खुला है
और अपना library database खोलते हैं
यदि base पहले से ही खुला है तो हम file menu के अंदर open पर क्लिक करके library database खोल सकते हैं
या इसे file menu के अंदर recent documents पर क्लिक करके खोल सकते हैं
अब हम library database में हैं
चलिए बाएँ panel पर database सूची में forms icon पर click करते हैं
ध्यान दीजिये कि forms के भीतर इस window में books data entry form चिह्नांकित हो गया है
चलिए इस form name पर दायाँ click करते हैं और open पर click करते हैं
अब हम books सूची के fields के समरूप labels और text boxes के साथ नीले background के साथ एक now window देखते हैं
चलिए प्रत्येक field में जाने के लिए tab बटन पर click करते हैं और जैसे ही हम अंतिम में जाते हैं base अगला record खोलता है
इस तरह से हम records का पारगमन कर सकते हैं
या records के बीच जाने के लिए हम toolbar में नीचे काले त्रिकोण आइकंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं
वैकल्पिक रूप से एक विशिष्ट record पर जाने के लिए toolbar के नीचे record संख्या type करिये और enter बटन या tab बटन दबाइए
चलिए अंतिम record पर चलते हैं जोकि पाँचवा है
add चलिए एक now record जोड़ते हैं
यह करने के लिए new record icon पर click करिये जोकि toolbar के नीचे अंतिम record icon से दूसरा दायाँ है
घ्यान दीजिये कि हम खाली text boxes और नीचे record संख्या देखते हैं जोकि 6 है
अब हम एक now record एक now पुस्तक कि सूचना के साथ जोड़ने के लिए तैयार हैं
title text box में paradise lost type करते हैं और अगली field पर जाने के लिए tab box का इस्तेमाल करते हैं
author के सामने john milton type करते हैं
publishyear के सामने 1975 टाइप करते हैं
publisher के सामने oxford
और price के सामने 200
यहाँ हमने अभी books table में books data entry form का इस्तेमाल करते हुए एक नया record प्रविष्ट किया
हम इस window को बंद करते हैं
इस प्रकार से हम और records या data जोड़ सकते हैं
चलिए देखते हैं कि यदि base नें अंतिम record के साथ books table में सुधार किया है या नहीं जिसे हमने अभी प्रविष्ट किया है
इसके लिए libreoffice base मुख्य window में चलिए दायें panel में books table पर double click करते हैं
नये record जिसे हमने form के जरिये यहाँ प्रविष्ट किया था उसपर ध्यान दीजिये
ठीक है हम इस window को अब बंद करेंगे
अब चलिए सीखते हैं कि कैसे अपने form में सरल सुधार करें
हम बाएँ panel पर database सूची में forms icon पर click करेंगे
और इस पर दायाँ क्लिक करके और edit चुनकर बदलाव करने के लिए books data entry form खोलेंगे
अब एक परिचित window खुलती है
इसके अलावा यदि आप लेबल title पर क्लिक करते हैं तो आप लेबल और टेक्स्ट बॉक्स को घेरे हुए कई सारे छोटे हरे बॉक्स देखेंगे
इसका मतलब है कि design window फॉर्म में है
और हम form का रूप और उसके elements और साथ ही उसकी कार्यत्मकता बदल सकते हैं
उदाहरणस्वरुप हम labels और text boxes का स्थान और आकर बदल सकते हैं
इन्हें properties भी कहते हैं
label टाइटल पर double click करिये
यह properties नामक एक छोटा popup window खोलता है
यहाँ अनेक प्रकार के elements पर ध्यान दीजिये
अब चलिए label author पर click करते हैं ध्यान दीजिये कि properties window refreshes होती है और label author की विशेषता दर्शाती हैं
अतः हम जैसे ही हम form पर विभिन्न elements पर click करते हैं हम देखते हैं कि properties window चुनित element की विशेषता को दर्शाने के लिए refreshes होती है
अब properties window टाइटल properties multiselection की तरह से पढता है
ऐसा इसलिए क्योंकि हम देख सकते है कि author label और उसका textbox इसके बगल में ही है हरे boxes के एक समूह में रखे गये हैं
base ने labels को स्वतः ही labels और उसके उनुरूप textboxes को form में समूहीकृत कर दिया है
title label पर दायाँ click करिये और फिर नीचे group पर click करिये फिर ungroup पर click करिये
अब हम देखते हैं कि label टाइटल और उनके text box असमूहीकृत हो गये हैं
इस प्रकार से हम form में विशिष्ट elements की विशेषताओं में बदलाव कर सकते हैं
अगला चलिए टाइटल text box में एक tool tip जोड़ते हैं
अब चलिए properties window में नीचे तक scroll करते हैं
label help text पर ध्यान दीजिये और यहाँ चलिए type करते हैं enter the title of the book here
अब सबसे ऊपर file menu के नीचे save icon पर क्लिक करके form सेव करते हैं और हम इस window को and करेंगे
अब देखते हैं हमारा form हमारे किये गये बदलावों के बाद कैसा दिखता है
इसके लिए base मुख्य window में जाते हैं बाएँ panel में forms icon पर click करिये
और दायें panel में books data entry form पर double click करिये
mouse को टाइटल label या text box के ऊपर दर्शाते हैं
ध्यान दीजिये कि एक tool tip दिखेगी जो कहेगी enter the title of the book here
अतः अब हमने सीखा कि कैसे अपने form में सरल बदलाव करें
हम base tutorial के अगले भाग में देखंगे कि कैसे एक form में अधिक बदलाव करें
यहाँ पर एक नियत कार्य है
members table के लिए एक साधारण form बनाइए
अब हम libreoffice base में form में बदलावों पर इस tutorial की समाप्ति की ओर हैं
संक्षेप में हमने सीखा कि कैसे form में data प्रविष्ट करें और कैसे form में बदलाव करें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
यह project